एक आदमी चलाता हुआ नजर आ रहा है। इस नाव में दो लोग बेठे हुए हैं। पानी का कलर ब्लू नजर आ रहा है और अ सामने कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं।

इस स्टेज में कुछ लड़कियाँ कुछ बच्चियाँ नज़र आ रही हैं। जिसे --

एवम् परिवार कल्याण संस्थान लिखा हुआ है। यहाँ पटना में बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ लोग माक्स लगाए हुए नज़र आ रहे हैं।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। आपको एक चार्टर्ड बस नजर आ रही है। जिस पर समीर ट्रेवल्स लिखा हुआ है। यह बस ब्लू रंग की दिखाई दे रही है।

जिन्होंने अपने पेन्ट पर इंच टेप लगायी हुई है और चश्मा लगाया हुआ है। एक सफेद रंग की टोपी पहनी हुई है। यहाँ पर काफी सरिया नज़र आ रहा है।

रहे हैं | खिड़कियों में पर्दे डले हुए नजर आ रहे हैं।

सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे है इसमें एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जिसने लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है और लोग नजर आ रहे है।